ऐ हा कोई सेलून होइस उहाँ एक जी भाई के फेसियल होए हे लगत हे ओ हा अपन मोबाइल म सेल्फी लेवत है।